ये एक बस स्टेशन है। यहाँ पर एक वाइट कलर की बस खड़ी हुई है। एक ब्लू कलर की बस खड़ी हुई है। यहाँ पर एक आदमी है जोकि रिक्स रिक्शा लेके जा रहा है और साइड में एक रिक्शा खड़ा है और सामने एक बस है।

राइट साइड की जो दीवार है बहुत खराब दिख रही है लेफ्ट साइड की दीवार जो है की ऑरेंज कलर की है यहां एक शटर है जिसका कलर ब्लैक एंड पिंक है और सामने एक बोरी पड़ी हुई है।

ये एक बड़ा-सा हॉस्पिटल है जोकि वाइट कलर का है। यहां पर ऊपर कुछ पाइप्स लगे हुए है। यहां पर हर एक बेड के पास पंखे लगे हुए है।

और नीचे एक ब्लू कलर की गाड़ी है एक वाइट कलर की कार है दो लोग बाइक से जा रहे है सामने दो आदमी खड़े हैं जिन्होंने बनियान पहनी हुई है।

एक बड़ा-सा गार्डन है यहाँ पर खम्भे लगे हुए है जिनके ऊपर वाइट कलर की लाइट्स लगी हुए है यहाँ पर चार फिसल पट्टियां रखी है कुछ झुले रखे हुए है कुछ छोटे मोटे झुले रखे हुए है कुछ डस्टबिन है।

सामने एक बाइक का शोरूम है जहाँ पर बहोत सारी बाइक्स लगी है यहां पर ग्रीन व्हाइट ऑरेंज कलर के फुगे लगे हुए है कांच के राइट साइड अंदर बहोत सारी लाइट्स लगी हैं जो की व्हाइट कलर की है इसकी छते जो है वो व्हाइट है।

सामने एक बड़ा सा टावर दिख रहा है जिसके राइट और लेफ्ट साइड बहुत बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए हैं ।